यह बिल्डिंग एस_एम कॉलेज की पिक्चर है।

यह जो हॉल बहुत ही साफ सुथरा दिखाई दे रहा है।

भीड़ बना के भी खड़े हैं और बोहोत सारी गाड़ियां भी पड़ी हुई हैं।

और एक मंदिर भी दिखाई दे रहा है।

यह फोटो एक मार्ट की फोटो है जिसमें बहोत सारे कपड़े दिखाई दे रहे हैं।

झरने की आस पास बहोत सी हरियाली है पेड़ पौधे बहोत ही सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं।

जिसमें आयुर्वेदिक के बहुत सारे दवाइयां दिखाई पड़ रही है।

की बहोत ही हरियाली है उसके सामने बहोत सारे घर भी दिखाई दे रहे हैं।

यह फोटो एक हॉल का फोटो है।

कौन है जिसमें बाहर एक आदमी दिखाई दे रहा है और बाहर कुछ--

यह फोटो एक रोड की फोटो है।

जिसमें दो भैंसे चलती हुई दिखाई दे रही है।

जिसको बाहर से ही बहोत ही सुंदर तरीके से आकर्षित बनाने के लिए सजाया गया है।

यह फोटो एक ललित प्रीमियम कार सर्विस गेरेज की फोटो है।

यह फोटो एक हाथी की फोटो है।

हाथी की मूर्ति से पानी निकल रहा है।

फुआरे की तरह और बच्चा उसके ऊपर बैठा हुआ है औ--

पौधे के प्लांट्स दिख रहे हैं।

यह फोटो एक हाल की फोटो है।

और इसे बहोत ही सुंदर तरीके से सजाया हुआ है।

बहार का एंट्रेंस गेट दिखाया गया है जो की बहोत ही आलीशान वे में बनाया गया है।

यह फोटो एक दवाई दुकान की फोटो है।